केटली भी दिखाई दे रही है बोटल भी दिखाई दे रहे हैं ओवन भी दिखाई दे रहा है एक लड़का भी दिखाई दे रहा है टेबिल भी दिखाई दे रहा है। लड़का हाथ में चाय लिए हुए दिखाई दे रहा है और बोहोत सारी --

एक बड़ा सा झाड़ भी दिखाई दे रहा है जोकि काफी हरा दिखाई दे रहा है और --

जैसा की देख पा रहे हैं एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के सामने एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

और एक खंभा भी दिखाई रहा है तार भी दिखाई दे रहा है।

जैसाकि देख पा रहे हैं एक जिम दिखाई दे रहा है।

खंभे पे तार भी देखाई दे रहे हैं और --

हेंगर मे बोहोत सारे कपड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंखा दिखाई दे रहा है। एलईडी दिखाई दे रही है और --

घर के सामने एक बोहोत सारा खंबे दिखाई दे रहे है। तार दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

देख पा रहे है एक घर दिखाई दे रहा है घर का गेट भी दिखाई दे रहा है एक लेडीज भी खड़ी दिखाई दे रहा है एक आदमी भी दिखाई दे रहा है एक --

येलो कलर की दिखाई दे रही है और ग्राउंड पर हरा --

पीले कलर से पुता हुआ दिखाई दे रहा है।